libreoffice base पर इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
यह tutorial database डिजाइन पर पिछले tutorial के आगे का भाग है
और यहाँ हम निम्न विषयों को सीखेंगे:
database डिजाइन को सुधारना
normalization सामान्यकरण नियमों को लागू करना
database डिजाइन को जाँचना
पिछले tutorial में हमने सीखा था कि table relationships को स्थापित करने के लिए primary कीज़ और foreign कीज़ को कैसे निर्धारित करें
अब database डिजाइन के तरीके को आगे बढ़ाते हैं
पहले हम अपने database डिजाइन में सुधार करेंगे
अभी हमारे पास प्रारंभिक डिजाइन है हम tables को नमूने data के साथ now और भर सकते हैं
हम नमूना queries forms और reports बना सकते हैं और देखते हैं कि हमारे सभी शुरुआती सवालों के जवाब मिले हैं या नहीं
हम अनावश्यक प्रतिलिपिकरण को जांच सकते हैं और डिजाइन में परिवर्तन करके उन्हें कम कर सकते हैं
हम columns जोड़ सकते हैं जिन्हें हम शायद भूल गये हों
साथ ही database पूर्णता को पुष्ट करने के लिए हम व्यापार नियमों को भी library database में सम्मिलित कर सकते हैं
उदाहरणस्वरुप books table में price column को अंकीय होना चाहिए
एक और व्यापार नियम हो सकता है: वापस करने की तिथि पुस्तक को जारी करने की तिथि के एक महीने बाद होनी चहिये
या जब कोई विशिष्ट कार्य होता है आगे की कार्यवाही तुरंत करनी चाहिए
अतः यदि पुस्तक को वापस करने की तिथि बीत जाये तो हमें सदस्य को याद दिलाने के लिए एक ईemail भेजने के लिए database में कुछ कार्यों को निर्धारित करना चाहिये
अतः चूँकि हम फिर से डिजाइन कर रहे हैं हम सम्भवतः नए tables columns नियमों या प्रतिबंधों को लागू कर सकते हैं
और data इन्टिग्रिटी न खोये यह सुनिश्चित करने के हमें पिछले सभी steps में जाना होगा
आगे हम normalization सामान्यकरण नियमों को लागू कर सकते हैं
इनको देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हमारे tables
a ठीक से बने हैं और
b कोई भी बदलाव anomalies से मुक्त हैं जिन्हें हम पहले देख चुके हैं
database डिजाइन में नियमों या normal forms को लागू करने को normalization सामान्यकरण कहते हैं
अपने tutorial के पहले तीन normal forms को देखते हैं
सबसे पहले पहला normal form देखते हैं पहला normal form या 1nf दर्शाता है कि सभी कॉलम वेल्यूस छोटी होनी चाहिए
उदाहरणस्वरूप books table में price column की प्रत्येक cell में केवल एक value होनी चाहिए
मतलब कि column में केवल उस पुस्तक की कीमत होनी चाहिए और कुछ नहीं
उसी प्रकार से authors table में प्रत्येक first name cell में केवल रचयिता का पहला name होना चाहिए
पहला normal form यह भी दर्शाता है कि columns के पुनरावृत्ति समूह नहीं होने चाहिए
उदाहरण के तौर पर हम मानेंगे कि एक प्रकाशक ने 3 पुस्तकें प्रकाशित की
और publishers table संरचना में निम्न columns हैं:
publisher id publisher book1 author 1 book 2 author 2 book 3 author 3
ध्यान दीजिये कि समूह: book और author तीन बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं
अतः यदि हम ऐसे पुनरावृत्ति समूह देखते हैं हमें अपने डिजाइन को फिर से देखना चाहिए
अब यदि प्रकाशक दस और पुस्तकें प्रकाशित करता है हम table संरचना को 20 columns जोड़कर बदलने के लिए बाध्य होंगे
अतः हम देखते हैं कि table डिजाइन data बदलावों जैसा स्थिर नहीं हैं
साथ ही table को पुस्तक या रचयिता के द्वारा खोजना और क्रमबद्ध करना जटिल हो जाएगा
अतः हम इस त्रुटी को table को दो या तीन tables में विभाजित करके हल कर सकते हैं
हमारे उदाहरण में हम उपर्युक्त table को publishers books और authors में विभाजित करेंगे जैसा screen में दिखाया गया है
यह डिजाइन table को पहले normal form में लाएगा
और publishers और books के data को बदलने पर भी यह table संरचनाओं को स्थिर रखता है
अब दूसरा normal form देखते हैं
यदि table 1nf में है तो उसे दूसरे normal form या 2nf में कहा जा सकता है
और प्रत्येक कीरहित column पूर्ण रूप से सभी primary की पर निर्भर हो जाती है
यह नियम लागू होता है जब हमारे पास एक primary की हो जो एक से अधिक column सम्मिलित key
उदाहरणस्वरुप booksissued table को निम्न columns के साथ देखते हैं
bookid memberid booktitle और issuedate साथ ही bookid और memberid table के लिए primary की बना रहे हैं
अब booktitle column पर ध्यान दीजिये
हम books table में bookid में देख कर booktitle पा सकते हैं
दूसरे शब्दों में booktitle केवल book id पर निर्भर है और member id पर नहीं
अतः यह सभी primary की पर निर्भर नहीं है
इस table को दूसरे normal form में लाने के लिए हमें इस table से booktitle हटाना ही होगा
और key उन columns को रखना होगा जो primary की और columns दोनों पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं
issuedate column यहाँ पर रहेगा क्योंकि यह दोनों primary की fields पर पूर्ण रूप से निर्भर है
अब देखते हैं कि तीसरी normal form क्या है
table को तीसरे normal form 3nf में कहा जाता है यदि वह 2nf में होता है
और यदि सभी कीरहित columns एक दूसरे से स्वतंत्र हों
उदाहरणस्वरुप booksissued table को इन columns के साथ देखते हैं
bookissueid primary की की तरह काम करती है booktitle member issuedate
और यह मानते हैं कि वापसी तारीख के लिए librarys की नीति पुस्तक को जारी करने की तिथि के एक महीने बाद की है
अब base issuedate column का इस्तेमाल करके वापस करने की तिथि की गणना कर सकता है जोकि एक कीरहित nonkey column है
मतलब returndate वाकई में केवल issuedate column पर निर्भर करती है और किसी अन्य column पर नहीं
और यदि हम return date field में कोई अन्य तिथि प्रविष्ट करते हैं तो यह हमारी librarys की नीति का उलंघन होगा
अतः table को तीसरे normal form में रखने के लिए हम table में से returndate column हटा देंगे
अतः अब हम जान चुके हैं कि पहले तीन normal forms को कैसे लागू करें
साधारणतः हमारा database डिजाइन 3nf पर रुक सकता है
normal forms और database डिजाइन पर अधिक जानकारी के लिए screen पर दिखाई दे रही websites पर जाएँ
अंततः अपना database डिजाइन जाँचते हैं क्योंकि हम अपनी database डिजाइन की प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं
हम database संरचना बना सकते हैं;
यहाँ हम tables relationships नियम या प्रतिबंध forms queries और reports बनाएँगे
और हम database को वास्तविक data औए उपयोगकर्ताओं के साथ जाँच सकते हैं
database में data जोड़ने अपडेट करने या मिटाने के लिए forms का इस्तेमाल करें
reports run करें यह देखने के लिए कि reports के परिणाम उचित और सही हैं
चूँकि database इस्तेमाल के लिए तैयार है हम गति के मामले में इसका प्रदर्शन जाँच सकते हैं
हम data को तेज़ी से पाने के लिए tables में इन्डेक्सिज़ सूचियाँ जोड़ सकते हैं
और अपने database application को सफलतापूर्वक चलाने के लिए हमें समयसमय पर database अनुरक्षण करना चाहिए
अब हमने कर लिया है यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है:
library database डिजाइन में media नामक एक नई entity जोड़िये
media में dvds और cds शामिल हैं और यह या तो audio या video हो सकते हैं
पुस्तकों की ही तरह dvds और cds भी library सदस्यों को जारी कर सकते हैं
database डिजाइन प्रक्रिया का अनुगमन करें
और पहले तीन normal forms को अपने डिजाइन में लागू करें
इसी के साथ हम libreoffice में database डिजाइन के तीसरे भाग के इस tutorial की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने database डिजाइन में निम्न विषय सीखे:
7 database डिजाइन को सुधारना
8 normalization सामान्यकरण नियमों को लागू करना
9 database डिजाइन को जाँचना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
यह project